झे इस फोटो में चट्टान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर लाल कलर का रोशन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर पानी गिरा हुआ रोड दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक स्कूटी में दो लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक टेबिल दिखाई दे रही है।

इस फोटो पर मुझे पे परफेक्ट ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर तीन पहाड़ दिखाई दे रहे है।

लकड़ी भी दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे र--

मुझे इस फोटो पर पानी दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर--

मुझे इस फोटो पर बड़ी सी घास दिखाई दे रही है।